ये बड़ा ऑफिस नजर आ रहा है ऑफिस बहुत सुंदर लग रहा है ऑफिस में बहुत सुंदर सजावट भी है और उसमें रंगीन बैलून भी लगे हुए हैं बड़ा सुंदर ऑफिस दिख रहा है।

एक किराना दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बच्चों की तरह-तरह की चीज़ें दिख रही है और वह चीज़ें बेचने के लिए के लिए रखी हुई है बहुत बड़ी रस्सी भी दिखाई दे रही है।

यहाँ बहुत सुंदर लम्बे-लम्बे फूलों की मालाएं रखी हुई हैं और मालाएं कई प्रकार की हैं जैसे सफ़ेद लाल और मिक्स कलर में मालाएं टंगी हुई है लम्बे-लम्बे फूलो की मालाएं बहुत सुंदर लग रही है।

दुकानों में नीले लाल रंग की कुछ बोतले भी दिखाई दे रही है और दुकान अच्छी लग रही--

यहाँ बहुत सारी कार रखी हुई नजर आ रही है और कारे कई प्रकार की है समने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग भी बहुत सुंदर लग रही है और जो कार रखी है वह भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है।

यहा सामने बच्चे दोड़ते हुए दिखाई दे रहे है जो ऐसा लग रहा है प्रतिस्पृधा कर रहे हो कि कौन आगे निकल पाएगा बच्चे बहुत तेज दोड़ रहे है और खाली जगह मे बच्चे दौड रहे है।